जैसे की हम सामने देख सकते है एक पेलेट रखी हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर से बहुत सी खाना रखी हुई दिखाई दे रही है और बोस दोनों साइड में बहुतज्यादा --

और चमच्च दिखाई दे रहे है एक फोक दखाई दे रहे है कांटे वाला चमच्च उसी में बक चमच दिखाई दे रहा है।

जैसे ये सामने हम देख सकते है ये बहुत खूबसूरत -सा घर दिखाई दे रहा है सामने एक लेडीज खड़ी वो दिखाई दे रही है जो उसके हाँथ में झाड़ू हो वो झाड़ू लगा रही है रोड में --

यहाँ पे बहुत से सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है अम यहाँ पे जो सामन रखे हुए दिखाई दे रहे है ताकि वो बहुत धुंधले है ।

और साइड में बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे है देखने में बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

और देखने में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे है साइड बहुत से पत्ते दिखाई दे रहे है ऊपर साइड में एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं ।

दिखने में बहोत ही सुंदर नज़ारा दखाई दे रहा है ।

जैसे की हम देख सकते है ये एक पूरा घांस खेत का सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है ।

साईकल साईकल ऐसे कुछ रहे हुए है ऐसे एक्सरसाइज के लिए रखे हुए दिखाई दे रहे है और सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है साइड में बहुत सी मशीन राखी हुई दे रही है।

जैसे कि हम देख सकते है ये एक बड़ा- सा दरवा दरवाजा दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से जाली लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और साइड में बहोत सी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और ये सामने एक घर टाइप का है।